इस तस्वीर में मुझे लकड़ी से बना हुआ आधा घर दिख रहा है।

टायर के सामने बोतल भी रखे हुए हैं।

उसने हरा रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

छोटे छोटे घास भी उगे हुए है।

पीछे में खिड़की भी है।

छोटे छोटे घास भी उगे हुए हैं।

आसमान भी दिख रहा है।

एक खुला आसमान भी दिख रही है।

आर्टिफिशियल फ्लॉवर्स भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहोत सारे घर बन के हैं।

जो की लोहा से बनाया हुआ है साइड में बिल्डिंग भी है।

इलेक्ट्रिक वायर्स भी टंगा हुआ है।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

पेड़ में एक बोर्ड टंगा के है।

बहुत सारे बॉक्स में आदमी का पिक्चर भी है।